वो आदर ले रहे हैं सभी लोग अलग की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग नहा रहे हैं।

कुछ लोग पानी में जाकर सेल्फी भी ले रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा कुंड है यह बनारस में स्थित है इसकी बगल में एक मंदिर भी है यहाँ पर सभी --

यह टोटो मैं पैसेंजर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर एक बाइक वाला स्कूटी वाला भी खड़ा हुआ है वह स्कूटी पर दो आदमी बैठा हुआ है एक आदमी लाल रंग की टी_शर्ट और--

अनारकुंड में है यह बहुत ही बड़ा होटल है यह होटल को पीले रंग की लाइट से बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है।